ऊपर टैटू राइटर्स बोर्ड लगा--

यहां हमें एक सड़क दिखाई दे रही है। सड़क के पार हमें भैसे नज़र आ रही है।

एक ए पंक सी सीलिंग फैन का अंद बाहर का हिस्सा दिख रहा है और लाइट नज़र आ रही है।

उसके अंदर पौधे पत्तियां लगी हुई दिख रही है।

तार सारे बंधे हुए जमीन पर पड़े--